कार्पेट रखा हुआ है और कुछ कप हैं।

ये बादल पे आसमान पूरा साफ है जिनमें काफी सारे बादल हैं।

यहां पे एक रास्ता है जहां पे--

एक बाजू चावल पानी रखें हुए है और पीछे पे बैठकर आपस में बातें कर रहे हैं।

दो आदमी कुछ काम कर रहे हैं एक लड़की कुछ काम कर रही है ऊपर लाइटिंग है एक दरवाजा है।

दिखा रहा है जिसमे उसे--

एवं देवी ले जा रहे हैं और लोग काफी साइड ठहरे हुए हैं।

ये फूलों से पूरा सजाया गया है पीछे एक फैन नजर आ रहा है।

एम और पीछे काफी बड़े बड़े तरह ट नजर आ रहे।

जा रहे हैं पीछे भी इस एक बोर्ड नजर आया जिसमें भी काफी नजर आ रहे हैं एक पहाड़--

और बाजु में एक और एक नजर आ रहा है।

यहां पे एक रास्ता है जिसमें गाड़ियां जा रहे हैं सामने एक खंभा है।

और इंडियन ऑयल का एक लैंप हैं डंडा हैं।

और साइड में बिल्डिंग नजर आ रही है वाल्स है नीचे उतरने का भी रास्ता है।

यहां पे एक ट्रेन नजर आ रही है जो ठहरी हुई है ऊपर एक खंभा है।